बाहर उम्म और अंदर में भी बहोत सारे लाइट जल रहे हैं।

यहां बहुत सारे लोग अपने-अपने प्लास्टिक बिछा के --

कस एक्सरसाइज करने का समान रखा हुआ है।